और जो दो लोग खड़े हैं उन्होंने वाइट रंग की टी-शर्ट और एक ने शर्ट पेहनी हुई है।

फिश रखी हुई हैं यहाँ पे जितनी भी फिश हैं वो सारी मरी हुई हैं।

शटलकॉक है और भी बहुत सारी है आउटडोर गेम्स के इक्विपमेंट यहाँ रखी हुई है ये एक शॉप है |

हॉस्पिटल का बोर्ड लगा हुआ है जहाँ नीचे ट्वेंटी फोर सेवन --

और ये इंदौर स्टेडियम है।